ये कसरत करकर अपने शरीर को काफी स्वस्थ रखते हैं बहुत से बच्चे अपनी बॉडी बनाने के लिए जिम में जाते हैं।

ये कोई कैफ़े लग रहा है जो कि अत्य आधुनिक रुप से सजाया गया है।

इसमें हरे-हरे पेड़ और नीले-नीले आकाश दिखाई दे रहे हैं। दूर तक केवल हरियाली ही दिखाई दे रही है। जिसको देख कर आँखों में ठंडक और दिल को सुकून पहुँचता --

स्टार बक्कस के बगल में अशोक के पेड़ हरे-हरे दिख रहे हैं।

यह गुरु गोरक्षनाथ मंदिर का दृश्य है।

इस ई रिक्क्षा को जो व्यक्ति खरीद कर चलाएगा उसे की आमदनी काफी होगी क्योंकि इसमें पेट्रोल डीजल नहीं पड़ता ये बिजली से चार्ज होता है ।

जहां पे बहुत से लोग अपने योगा मैट पे लेट कर योगा क कर रहे हैं एक प्रशिक्षक इन सभी लोगों को योगा सिखा रहा है।

यह एक शाॅपिंग मॉल है जिसका नाम कबीर मॉल है।

ये मल्टी स्टोरी है इसमें पार्किंग के लिए बेसमेंट की व्यवस्था की गई है बेसमेंट में लोग दो पहिया चार पहिया वाहन खड़े करते हैं।

यह एक स्कूल का दृश्य है जहाँ पे कुछ बच्चे --

मैदान खाली मैदान है जो जिसमें की हरी-हरी घासें लगी हुई हैं। मैदान के किनारे काफी सारे पेड़ और ऊँची ऊँची इमारते हैं।

यहाँ से एस्कलैटर लगा हुआ है जिसकी मदद से यात्री बिना चढ़े खड़े होकर प्लेटफार्म अम नीचे से प्लेटफोर्म नंबर एक दो तीन चार पांच पे जाने वाले --

जिसको लोग देखने आते हैं। इस मालगाड़ी वैगन को प्लास्टिक की सीट के के नीचे रखा गया है ताकि ये पानी और धूप से इसके कलर को कोई नुकसान न पहुँचे।

किसी खूबसूरत पार्क का दृश्य है जहां पे एक स्तंभ बना हुआ है।